और आस पास काफी सारे तार दिख रहे है जो ब्लैक कलर के दिख रहे है उस होटल देखता होटल ब्लेस्क अ-ब्लैक कलर का देखता काफी सारी बाइक्स दिख रही है कुछ हेलमेट रखे हुए दिख रहे है। जो ब्लैक कलर के दिख रहे है और काफी पर्सन आते जाते हुए दिख रहे है और आसमान दिख रहा है जो ब्लू कलर में दि--

घास हरे कलर की दिख रही है और आसमान दिख रहा है आसमान रेड दिख रहा है और यहाँ कुछ पर्सन खड़े हुए दिख रहे है एक लेडिज खड़ी हुई दिख रही एक जैंट्स खड़ा हुआ दिख रहा जिसने हरे कलर का जैकिट पहन रखा है। ब्लैक कलर का मास्क --

ये कार ब्लैक कलर की दिख रही है और आस पास कुछ घास दिख रही है घास हरे कलर की दिख रही है कुछ मिटी की तरह ही है और काफी बिल्डिंगए भी है कई बिल्डिंग पे कुछ दिख रही है।